एक कमल का फूल रखा है। गुलाब के भी मालाएं हैं।

यहाँ पर कैरेट से बहोत सारा मिर्चा जमीन पर डाला गया है।

लोग अ सही और खराब मिर्ची अलग कर रहे हैं मिर्ची हरे रंग की हैं।

फोटो स्टूडियो है और यहाँ पर शादियों में वीडियोग्राफी भी की जाती है।

एंबुलेंस खड़ी हुई है जो कि पेशेंट को आपातकालीनसिचुएशन --

और शरीर में प्रोटीन लेतें हैं।